यह एक स्थान है जहाँ पर क्रम पर गाडी बस या किसी वाहन में डीज़ल या पेट्रोल डलवाने की सुविधा उपलब्ध है जिसे तेल कहते है।

और आगे एक घंटा लटका है और इसे बजाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।

यह एक पटरी है जिसपे मालगाड़ी सामान ले कर जा रही है और यह मालगाड़ी लाइन से चलती है।